जो हरा रंग की है।

में एक व्यक्ति मौजूद है।

जिसमे तार पार की गई है।

यह एक सड़क है सड़क के किनारे बहुत सारे बाइक खड़ी है।

यह एक रेस्टुरेंट है।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है सामने की ओर बॉक्स से बनाए गई है।

तथा बॉक्स में इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा हुआ है।

नीचे साइड मार्बल बिठाया गया है जो वाइट कलर की है।

नीचे साइड में एक मग है।

सामने की ओर एक प्रज्ञाकेंद्र है प्रज्ञाकेंद्र के ऊपर साइड एक पोस्टर लगा हुआ है।

जनरल इस्टोर एवं प्रज्ञा केंद्र लिखा हुआ है।

सामने की और शटर लगा हुआ है।

दुकान के ऊपर साइड पोस्टर लगे हुए हैं।

अमूल के नीचे हेरा एंटरप्राइजेज लिखा हुआ है।

सामने की ओर चिप्स तथा कुरकुरे का पैकेट टांगा हुआ है।

हेलमेट पहने हुए हैं सामने कि ओर घर है जो व्हाइट कलर की है।

रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे व्यक्ति मौजूद है एक व्यक्ति बैठे हुए हैं।

सामने की ओर एक व्यक्ति भी है।

सैलून के दीवाल में शीशे लगे हुए हैं।

जार के बगल में एक बोतल रखा हुआ है।

यह एक दुकान है दुकान के अंदर बहुत सारे वस्तुएं मौजूद है।

तथा उसके ऊपर शायद लाइट लगी हुई है।

व्हाइट शटर के बगल में एक और शटर लगा हुआ है।

सामने की ओर खंबे हैं।

एक दुकान है दुकान के अंदर बहुत सारे वस्तुएं मौजूद है।

बिल्डिंग में लाइट लगी हुई है जो व्हाइट कलर की है।

नीचे साइड घास उगा हुआ है।

हरा कलर की है।

सामने की गमले रखा हुआ है।

सामने की ओर दरवाजा है।

सामने की ओर एक व्यक्ति बैठे हुए हैं जो व्हाइट कलर के टी शर्ट पहने हुए हैं।

सामने के ऊपर साइड बहुत सारे बैलून लगे हुए हैं।

सामने की ओर मार्बल बैठाया गया है।

दीवाल मे एक फैन लगा हुआ है जो व्हाइट कलर की है तथा बोर्ड भी लगा हुआ है।

सामने के ओर एक व्यक्ति है।

पिला कलर के टी शर्ट पहने हुए है।

सामने की ओर एक लैपटॉप रखा हुआ है।

उनके ऊपर साइड चार फैन लगे हुए हैं।

यह एक क्रिकेट मैदान है।

एक रूम है रूम के अंदर दो व्यक्ति मौजूद हैं सामने की ओर एक टेबल रखा हुआ है।

टेबल पर एक लैपटॉप रखा हुआ है सामने की ओर पांच चेयर लगा हुआ है।

दुकान के अंदर एक व्यक्ति बैठे हुए हैं जो ब्लैक कलर के टी शर्ट पहने हुए हैं।

दुकान के बाहर साइड ऊपर साइड पोस्टर लगा हुआ है।

उसके जस्ट नीचे एक लाइट लगा हुआ है।

सामने कि ओर एक घर भी है।

ऊपर साइड सीसे लगे हुए हैं।

दुकान के ऊपर साइड लाइट लगी हुई है जो व्हाइट कलर की है।

एक व्यक्ति ब्लैक कलर के टी शर्ट पहने हुए हैं सामने की ओर एक केले का पत्ता है।